ऊपर में एक चोंगा दिख रहा है और नीचे हरा रंग से पेंट किया हुआ है और तार बहुत सारे गए हुए--

इस चित्र मे एक गदा दिख रहा है जो कि लंबा चौड़ा है और उसपे एक डंडा रखा हुआ है एक आदमी गाड़ी से जा रहा है।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

बहुत दूर दूर बहुत ही बड़ा बड़ा पहाड़ दिख रहा है और हरा भरा पेड़ पौधे दिख रहे हैं उधर कुछ डीबे दिख रहे हैं।

टेंपो पर एक लात रखा हुआ है इधर एक बुड्ढे आदमी बैठे हुए हैं।

बहुत सारे कुर्सियाएं दिख रही है और फ़ुड काउंटर भी दिख रहा है एक आदमी का पोस्टर सटा हुआ है।

और बॉल जल रहा है बहुत सारे लिखे हुए हैं और दांत का अस्पताल लिखा हुआ है।

बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे घर दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं और इधर एक तालाब दिख रहा है।

इस चित्र में एक बहुत ही बड़ा स्कूल है जिसके सामने बहुत सारे बच्चे लोग और टीचर लोग हैं सभी लोग योगा कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ा ग्रिल है।

और बीच में रास्ता गया हुआ है अंदर में बहुत सारी बाइक लगी हुई है और दो ताला घर है पीछे एक पोल गाढ़ा गया है।

और बहुत सारे बोल लगे हुए हैं इधर एक पोल गाढ़ा है जिसमें बोल टांगा हुआ है और बहुत सारे ब्ल्यू रंग के डिब्बे दिख रहे है।

इस चित्र में एक काउंटर है जिसमें एक पी_सी दिख रहा है और पीछे दो कुर्सियां हैं और तीन चार पी_सी हैं।

बहुत सारे तार इधर से उधर गए हैं और बहुत सारे कॉपी किताब दिख रहे हैं।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

इस चित्र में ये दिख रहा है कि यहां पे बहुत सारे हाथ धोने वाले लगे हुए हैं।

इधर कुछ साड़ी टांगी हुई है और इधर ग्रिल लगा हुआ है नीचे एक बोरा लगा हुआ है और उसके ऊपर एक टेबुल और कुर्सी है।

इस चित्र में एक बहुत ही बड़ा घर का दृश्य है जिसमें बहुत सारे पूर्वज लोगों का फोटो छापा गया है।

चित्र में एक दुकान दिखाया जा रहा है जिसमें ऊपर न्यू ताज लिखा हुआ है।

चित्र में एक रूम है जिसमें एक बॉक्स में पानी और मछलियां रखी हुई है और नीचे चारा गिरा हुआ है।

और बहुत ही अच्छा अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है एक काउंटर बनाया गया है जिसमें एक लैपटॉप रखा हुआ है और कुर्सी पर टॉवेल रखा हुआ है।